यहा पर एक रूम दिखाई दे रहा है रूम बड़ी मसीन है दिखाई दे रहे है यहा पर दो लोग कुछ करते हुए दिखाई दे रहे है यहा पर दो बड़े-बड़े ये बाल्टीसी बनी हुई डिब्बे दिखाई दे रही है यहा पर बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे --

एक गार्डन दिखाई दे रहा है एक गार्डन के ए उ--

एक खेत में फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग फूल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।